ये तस्वीर मे दो लड्कीया फोटो लेती हुई नज़र आ रही है पीछे एक बाइक पे एक लड्का भी खड़ा दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई कैफ़े नज़र आ रहे है।

नाव भी दिखाई दे रही है जिसपर एक आदमी बम्बू लेके खड़ा दिखाई दे रहा है उपर सफ़ेद आसमान भी नज़र आ रहा है।

हा एक लड़का वर्कआउट कर के अपने बाडी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है जिसके आसपास काफी कुच्छ जिम का सामान पड़ा रखा नज़र आ रहा है।

पीछे एक आदमी भी नज़र आ रहा है उसी के पास एक टीवी भी दिखाई दे रहा है एक आईना और काफी सामान--

सामने कुछ पानी भी बेहता हुआ नज़र आ रहा है और पीछे एक ब्रिज जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक लड़का फोटो खिचते हुए नज़र आ रहा है पीछे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके ही पीछे--

यहा फोटो के में कुछ बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके सामने कुछ महिलाए खड़ी नज़र आ रही है जिन्होने एक सरी के कपड़े पहने है।

कारपेट बिछी हुई दिखाई दे रही है और दरवाजे पे ह माला भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

आस पास काफी लोग भी दिखाई दे रहे है और कुछ लाइट्स भी लगे हुए है।

आसपास काफी लोग भी नज़र आ रहे है और पीछे एक रेड कार्पट भी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

ये फोटो कोई चर्च के बाहर की नज़र आ रही है जहा पर काफी संख्या में लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

यहाँ नदी मे काफी लोग नाहत के अप नहाते हुए दिखाई दे रहे है। कुछ महिला यहाँ पे कुछ झुकी हुई त--

यहाँ चर्च के फादर बैठे हुए नज़र आ रहे है उनके ही पीछे कुछ बच्चे खड़े नजर आ रहे है।

रहे है। गाड़ी के दरवाजे खुले नज़र आ रहे है। आस पास काफी दुकाने नजर आ रही है।